पीले रंग के बोर्ड है बोर्ड मे नंबर बी.आर. जीरो वन पी.जे. एट थ्री नाइन जीरो लिखा हुआ है पीछे सुधार दूध का पोस्टर भी लगा हुआ है बिल्डिंग भी है ऊपर से तारे वगैरा गई हुई हैं।